टैली सी_सी_सी जावा इलेवंथ ट्वेल्थ कम्प्यूटर कोर्स भी यहां पे करवाए जाते हैं।

पहिया और गाड़ी के टूल्स दिखाई दे रहे हैं यहां पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के सीट कवर --

दी गई तस्वीर हमें राठौर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस की दिखाई दे रही है।

दी गई तस्वीर में हमे कछुओं के लिए एक पाॅन्ड बनाया गया हुआ दिखाइ दे रहा है।

किचन में यूज होने वाले मिक्सर ग्राइंडर सुजाता मिक्सी --

दी गई तस्वीर हमे विध्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खेले जा रहे --

दी गई तस्वीर में हमें बहोत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम्स दिखाई दे रही है।

और हेयर ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट और प्रेप थेरेपी के द्वारा बालों में जांच की जाती है।

और यहां बैठने की व्यवस्था है रेस्टोरेंट की छत पे बहुत अच्छे रोशनी से दीवारें सजाई गई हैं।

आश्रम के भीतर बहुत अधिक संख्या मे वृक्षों को उगाया गया है यहां का वातावरण --

बिल्डिंग पर कांच के द्वारा बनाया गया है ऊपर कांच में हमें बहुत सारी --

बहुत अधिक संख्या में यात्री अपना अपना सामान लिए बस में बैठ रहे हैं भीड़ अधिक होने के कारण --

दुकानदार के लग रही है यहां पे प्लास्टिक के बहुत ही सुंदर --

बोर्ड के नीचे एक गाय खड़ी है।